यहां पास एक जंगल के बीच में एक मतलब एक जानवरों को देखने के लिए--

और एक लेडीज भी खड़ी हुई है।

और एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है और बहोत सारे पीछे भी पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पास एक बड़ा सा ऑफिस खुला हुआ है जो डिवाइड में बटा हुआ है एक कमरे में तस्वीर लगी हुई सरस्वती माता की।